यहाँ पर एक पार्क है पार्क अ पार्क में गेट लगा है गेट को काला कलर है बाजु से रस्ता है और वहाँ पर एक पानी की टंकी है हरे हरे झाड़ है और --

यहाँ पर एक फैक्ट्री फैक्ट्री में लोग काम कर रहे है और एक मशीन है और दो टंकी है बड़ी बड़ी मशीन अ लाईटे उसमे मशीन वगैरा है।

यहाँ पर एक बस स्टोप है और पांज छे बस है और एक बड़ा सा ग्राउंड है ग्राउंड में हरी हरी घासे --

और वहां एक लड़का बात कर रहा है आदमी है और एक औरत है --

याहा पर इक फुटबॉल ग्राउंड है गोल गोल का लगा है एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में कांच है और ए ऐ तीन बिल्डिंग है और एक और ये पोल है लाई --